यहां पर एक एच_डी_एफ_सी बैंक दिखाया गया है जहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं ए_टी_एम का वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए--

हाथी दिखाया जा रहा है मगर यह एक--

दिख रहा इस कांच की ग्रिल लगी हुई है दोनों तरफ का मकान ऐसा मकान सपने में ही देखने को मिलता है।

यहां पर ग्रीन कलर का कुछ दिखाया गया है।

बहुत ही अच्छे डेकोरेशन के साथ कप गिलास मिट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर --

यहां पर एक तालाब दिखाया गया है जो की--

पत्थर वगैरह दिख रहे हैं लेकिन सब कुछ पेड़ क हरे वाला पेड़ भी ब्लैक कर रखा है एडिट करने वाले को सलाम है मेरे भाई।

यहां पर एक ऑफिस जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है कुर्सियां भी बहुत अच्छी डेकोरेशन वाली है।

यह एक शोरूम तो नहीं है लेकिन आइटम वाली दुकान है जिसमें--

अं बड़ा ही डरावना नजारा कह सकते हैं इसको हम--

इस तरफ के तो गत्ते भी नहीं उतारे गए हैं।

और नीचे ग्रीन मैट और रेड मैट बैठा बिछा रखा है।

डेकोरेशन बाहर कुछ पत्ते लटका रखे हैं।

मैच खाते हुए इन्होंने नये कपड़े पहने हुए हैं।

नीचे का मैट भी बहुत अच्छा है डेकोरेशन बहुत ही अच्छी कर रखी है तो बहुत ही अच्छी जिम बोल सकते हैं इसको।

बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है।

कोई कंपनी दिखाई गई है। इसके नीचे--

दूसरी तरफ ए_सी कंडीशनर भीं दिख रहें हैं और दूसरी तरफ इसी के साथ एक गाड़ी भीं दिखाई गई हैं।

और नाइट में बहुत ही अच्छा व्यू पाने के लिए ऐसा कुछ बनाया जा रहा है।

जैसी कुछ अह डब्बे दिखाए गए हैं जो की लैट्रिन ही है।